ये एक फार्मेसी है जिसमें चीज पड़ी हैं।

बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं घर हैं --

बच्चे पढ़ रहे हैं टेबलस पड़े --

चाट लगा हुआ है।

लाइटिंग खुई हुई है लड़ियां लगी हुई हैं।

आदमी --

एक बाहिर खड़ा है ब्लैक टीशर्ट में --

बैठी हुई है बहुत साल--

एक बच्ची बैठी है। एक बच्चा खड़ा है। पानी के पास--

प्यारा सा लाइटिंग के साथ रहा--